जहाँ पे बहोत सारे चश्मे डिस्प्ले में लगे हुए हैं।

सबका मालिक एक जय श्री कृष्ण श्री गणेशाय नमः--

बस के सामने एक आदमी रेड शर्ट पहने हुए खड़ा हुआ है।

यहां पे बहोत सारे लोग अलग अलग ग्रुप में बैठे हुए हैं।

मुझे इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि ये एक डेरी फॉम है।

और ऊपर बोर्ड पे हीरो लिखा हुआ है।

गोडाउन के बाहर रोड पे दो लड़के जा रहे हैं।

मुझे इस फोटो में दिखाई दे रहा है ये एक--

मुझे इस फोटो में दिखाई दे रहा है ये एक--

जिस रूम में अलग अलग स्टेच्यू रखे हुए हैं ये सब स्टेच्यू अलग अलग --

मुझे इस फोटो में दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ियां लगी हुई हैं।

जहां पे लिखा है एक्सिस बैंक एटीएम स्टेट बैंक का एटीएम --

मुझे इस फोटो में दिखाई दे रहा है। यह एक खेत है।

और रोड के साइड में दो आदमी जोकी इंजीनियर लग रहे हैं कैमरा में कुछ देख हैं।

मुझे इस फोटो में दिख रहा है कि ये एक दुकान है।

कोलनी के अंदर एक रेड कलर का डस्टबिन रखा हुआ है।

और दुकान के अंदर डिस्प्ले में अलग अलग तरीके की परफ्यूम्स डेकोरेट की गई हैं।

मुझे इस फोटो में दिखाई दे रहा हैं कि ये एक--